एने बोर्ड में जमावर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक पेड़ भी दिखाई दे रही--

नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे ऊपर बहुत सारी लाइटे दिखाई दे रही हैं।

यह एक फिश मार्ट की दुकान है।

और ब्लू कलर में भारत पेट्रोल लिखा हुआ दिखाई दे।

और सामने एक बड़ी सी गेट दिखाई दे रही है।

यहां एक नल भी दिखाई दे रही है।

सामने दरवाजा दिखाई दे रही है नीचे मैट बिछी हुई दिखाई दे रही--

सामने रेड कलर की मैट बिछी हुई--

इस हॉस्पिटल का नाम के_एस_आर_टी_सी हॉस्पिटल जय नगर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जा के सामान का नाम है श्री श्री साईं लिखा हुआ है।

उसके सामने एक पेड़ लगी हुई दिखाई दे रही है।

और सामने बहुत सारे तेल की बॉटल रखे हुए दिखाई दे रहे।

अ तीन लोग रेड कलर के टी शर्ट पहने हुए दिखाई दे --

आज बहोत सारे बच्चे आए हुए हैं।

इस बोर्ड के ऊपर सैंडविच बर्गर और पिज़्ज़ा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

आस पास खिड़की लगी हुई दिखाई दे रही है।

इसके आसपास पेड़ और पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे--

ऊपर बहुत सारे लाइट जलती हुई दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारी चेहर ओर टेबल रखी हुई दिखाई दे एक आदमी चलते हुए दिखाई दे रहा है।

ये बच्चे ब्लू कलर के टी शर्ट पहने है।

एक लेडिस साड़ी पहनी हुई है।

एक लेडिस बुर्का पहनी हुई दिखाई दे रही--

साइड में कुछ लेटर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में दो फायर करने के लिए रखी हुई हैं।

यह एक नया घर है।

अ बच्चों के खेलने के पिसलन पट्टी दिखाई दे रही है।

यह एक नई घर बनती हुई दिखाई दे रही है।

पीछे झोपड़ी दिखाई दे रही--

एक आदमी खड़ा हुआ है।

इस घर के छत को दो आदमी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

दो आदमी ऊपर सर के ऊपर हेलमेट पहने हुए हैं।

वह दोनों ऑरेंज कलर के जैकेट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में पिंक कलर के पर्दा और एक साइड में ब्लू कलर के पर्दा--

इस मैदान के अंदर एक आदमी चलते हुए दिखाई दे रहा है।

साईड में कांच के खिड़की लगी हुई दिखाई दे रहे है।

यहां पे घर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।

नट बोल्ट दिखाई दे रहे हैं।

सूरज ढलता हुआ दिखाई दे रा है ऊपर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे।

जिसके दोनों तरफ पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहें।

बहुत सारी व्हाइट कलर की चेयर है।

यहां एक मिठाई की दुकान है।

जो ब्राउन कलर में बने हुए फर्नीचर से हैं।

और यहां पे बहुत सारे चेयर लगे हुए दिखाई दे रहे है।

सामने रेड रंग बिरंगे परदे लगे हुए दिखाई दे रहे है।

इसके आस पास खिड़की लगी हुई दिखाई दे रही --

बोर्ड भी लगी हुई है।

वहां पे नो एंट्री लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो कलर कलर से पेंट किए हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक ऑटो स्टैंड है।

एक लड़का ऑटो के ऊपर पांव रखकर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।